एक आदमी की तस्वीर हैं जहाँ पे वह दुकान पे बैठा हुआ हैंदु --

फिर एक छठ पूजा की है जो की बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई है।

--एक टीचर इन लोगो की प्रोजेक्ट फाइल को देख रही है टीचर ने वाइट कलर की फ्रॉक डाली है और चश्मा लगाया है।

यह एक बड़ी सी फॅक्टरी हैं जहाँ पे काम चल रहा हैं यहाँ एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हैं जिसमें मजदूर लोग उस बोडियो को उठा के उस गाड़ी के अंदर रख रहे हैं।

--हैंऔर एक आदमी उसका बाल काट रहा है उसके सामने एक बड़ा-सा शीशा लगा हैं ।